और एक लड़का बैठा हुआ हैं एक रूम में --

इस तस्वीर में यह जीम हैं ।

इस तस्वीर में यह एक घर हैं ।

खिलौने का दुकान बहुत अच्छा हैं और बड़ा भी हैं ।

महंगा भी हो सकता --

एक मार्केट हैं जो कि मार्केट में बारिश के कारण --

और एक गाड़ी में पानी ज्यादा घुस गई हैं और एक इंसान --

ठीक है लेबर भी लगे हुए हैं काम कर --

कुछ संसनाटा के जैसा लग रहा हैं या इसके तस्वीर में मार्केट के किनारे एल_जी किसी कंपनी का दुकान लग रहा हैं ।

बहुत अच्छी तस्वीर हैं सुबह का नजारा हैं।

दुकान का बगल में एक दुकान हैं वह दुकान बंद हैं ।

पूरा खाली एक लड़का हैं बॉडी बनाकर लगता हैं जा रहा हैं ।

यहाँ एक पूजा हो रही हैं ।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत बड़ा --

प्रोग्राम बड़ा ही होगा इसी चलते दिन से इसका तैयारी किये जा --

इस तस्वीर कोई मार्केट का हैं और ये मार्केट काफी भीड़-भाड़ हैं और --

नहा भी रहे कुछ इंसान है कुछ इंसान बैठे हुए भी है दिन का नजारा है।

पठाके भी छोड़ा जा रहा हैं ।

काम कर रहा हूँ आप भी जाइए काम कीजिए मेरा बात मत सुनिए ठीक हैं बाय --

यह तस्वीर किसी दुकान का तस्वीर हैं जो कि बहुत अच्छी दुकान है और इस तस--

दुकान का नाम हैं पेंटालोन--

या सप्लायर भी हो सकता हैं इंसान टिकट ले रहा हैं टिकट का स्टेशन हैंसो आइए टिकट खरीदिए --

एक दुकान हैं जो कि--

खिलौनों का सामान बहुत ही रखा हुआ हैं ।

महंगा मिलता हैं ।

बहुत ही अच्छी तस्वीर हैं आइए आप भी खरीदिए --